और तीन लड़की को दिखाई दे रहा है वह भी यहां पर आ रहा है शायद कोइ जन्म दिन ऐसा कुछ होगा बर्थडे पार्टी --

यह भी हमें एक दुकान दिख रहा हैयह किरा न का दुकान है यहां पर बिस्कुट लेके चाय भी और भी चनाचुर वगेरा और भी स्नेक्स और भी बहुत कुछ यहा पर मिल रहा होगा ।

स्टाक मैं दे रहा ही रहा है यह बहुत ही बड़ा दिख रहा है।

और यहाँ पर इसके पास में हमे रिवर भी वगेरा दिखाई दे रहा है टावर भी बढ़िया लग रहा है बहुत ही ऊंचा--

यह हमे शायद लग रहा है कोई होटल का कोई रूम वगेरा है यहाँ पर हमे --

मतलब कार्ट का फर्नीचर बहुत ही अच्छा लग रहा है एक अलमीरा बनाया गया है कार्ट का बहुत ही अच्छा है लकड़ी से--

हमे वही चीज लग रहा है जो खाने-वाने का चावल आटा से लेकर नून तेल चीनी सब कुछ यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल में मिल रहा है उसका सारा स्टोक दिखाई दे रहा है यहाँ पर।

और यहा पर देख रहे है तीन चार बन्दे भी है वो बस के आसपास ही है शायद बस यहां पर रुका हुआ है या जा रहा था डेस्टिनेशन मे।

ये भी हमे कोई शॉपिंग काम्प्लेक्स के अंदर में हमे देखाई दे रहा है कुछ समान फामान है कुछ बगल में बच्चे फुटबॉल दिखाई दे रहा यहाँ पर और कुछ--।